ई एक ऑटो है इसमे बहुत समान सब रखा हुआ है खाद का दुकान सब है।

रेड कर का हेना उसने कपडा पेहेना हुआ है और उसके बाद चक्का है गाड़ी का उसके ने गाड़ी का वाइट कलर का रंग है।

अ बोट है बोट पर बहुत सारा आदमी सब ते लेडीज सब है जेंट्स है सब चला-चला के इसके बाद है ना बहुत बड़ा पानी बहुत सारा पानी इतना पानी है |

डांस प्रोग्राम हो रहा है एक लड़की ने यहाँ पे नाच रही है| बहुत सारा बच्चा बैठा हुआ है | आर पिंक कलर का पूरा दम बना हुआ है एक आदमी अम टीचर वहाँ पे खड़ा हुए हैं।

यहाँ एक आदमी है ना यह कपड़ा में आइरन कर रहे हैं एक आइरन कपड़ा में आइरन कर रहे हैं शर्ट में एक घड़ी है।

बहुत सारा कपड़ा हैं उसमें यहां पर वाइट शर्ट मे आइरन कर रहैं हैं वो आदमी फोजिला कपड़ा पहने हुए हैं। एक नीला कलर का टि--

कार में एक्सर्साइज़ कर रहा है उस पर दोड़ रहा है दम दौड़ रहा है दम --

एगो आदमी नीला करके टीशर्ट पेहना हुआ है हरा करके पैंट पेहना हुआ है।

और उसके बाद मे अपन है टीशर्ट रखा हुआ है हरा-हरा करके क्या वो चुनरी सब लगा हुआ है बोरा हैं चड्डी सब हैं यह आदमी सब--

उसके अंदर भोले नाथ का पूजा करने जा रहा है आदमी |

एक औरत मास्क लगा के झोला लगाई है झोला है उसके हाथ में पर्स है यहाँ पे जा रही है समान किन्ने के लिए।

इस जगह पे बहुत सारा गिट्टी सब यहाँ पर बतक हरा-भरा बना हुआ है|

एक साइकल जेन्ट्स एक लड़की अभी आई है एक अपना आइब्रो के लिए स्कूटी है।